यह पिक्चर किसी बुक स्टोर का पिक्चर है जहां पर चारों तरफ बुक्स दिखाई दे रही हैं।

सामने एक कैलकुलेटर भी रखा गया है।

आगे एक छोटा सा अल्युमिनियम का कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है महिला हेल्प डेस्क ।

किसी संस्थान की तस्वीर दिखाई दी गई है जिसका नाम मोहम्मद बाग क्लब है।

यहां पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मॉल में कई सारी दुकानें ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं जहां पर लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

के बगल में एक तीन बत्ती भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में किसी मकान के अंदर एक छोटा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है।

इनके बगल में कई सारे लोग खड़े होकर बत्तख और पानी को देख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक सड़क दिखाई दे रही है।